चारों तरफ एक बड़ी सी बर्तनों की दुकान है उसमे लाइटिंग हो रखी है कुछ क्रेटे रखी हुई है एक आदमी है एक औरत है ग्रीन कलर की साड़ी पहनें हुए हैं जो मुँह से हाथ लगाए हुए खड़ी --

टमाटर लाल हैं कुछ बड़े हैं टमाटर कुछ टमाटर छोटे हैं टमाटरों पर दाग लगा हुआ है चारो तरफ टमाटर डले हुए हैं बड़े-बड़े।

नीचे लगी हुई है चारो तरफ से हरी सी हरी मार्बल लगी हुई है बगल में कुछ हलकी हलकी घास है उसपे कुछ कचरा डा --

में एक बहोत बड़ी बिल्डिंग है जिसमे कुछ कांच के गे कड़ खिडकिया लगी हुई है सामने एक रेलिंग लगी हुई --

एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं अ नीले कलर की कुर्सी है कुछ ब्रेंच रखी हुई है और ऊपर एक अ --

मूर्ति रखी हुई है एक गेट है सामने जोकि लाल कलर का है और उसमे लोहे का गेट है पीछे कुछ तार निकले हुए हैं और एक रस्सी निकली --

एक बहोत बड़ा ग्राउंड है उस में मेला लगा हुआ है दिख रहा है कुछ लोग दिख रहे हैं चारों तरफ --

चारों तरफ से लाइटे बनी हुई हैं पीछे कुछ पेड़ उगता हुआ सूरज आ रहा है चारों तरफ पानी है कुछ पानी भरा हुआ है एक जहाज है पानी का जिसमें बड़ी-बड़ी लोहे के बड़े-बड़े पाइप लगे हुए हैं।

बगल मे एक पत्थर की दीवाल है पत्थर की सड़क है खुला आसमान है सामने कुछ बड़ा-बड़ा पर्वत है साइड से ग्रीन पर्वत है उसमे पैड लगे हुए --

एक टेरेस है जिसपर दो आ लड़के है एक नीली कलर की शर्ट पहने है एक चीक चैक एक अ लोअर पहने हुए बाल्टी है उससे कुछ कलर कर रहा है जमीन पर।

कलर उड़ा हुआ है कोई बच्ची पढ़ चुकी है ऊपर खुला आसमान है नीचे छोटे-मोटे पैड-पौधे हैं एक सड़क लगाई हुई है एक दीवार डिवाइडर गया हुआ है बड़ा सा उसमे नीचे सामान डला हुआ है।